और सफ़ेद रंग की बस है एक आदमी खड़ा हुआ है और इसके पीछे बहुत सुन्दर सी बिल्डिंग बनी हुई है।

और पेड़ पौधे भी है सफेद रंग का वीला हैं रुखने के लिए बहुत हि अच्छा वीला है।

एक आदमी खड़ा है और स्विमिंग पूल भी बना है यहाँ पे शूटिंग के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है।

और रेल्वे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे यात्री खड़े हुए है अपनी ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहे है।

ये एक मंदिर है विद्यामंदिर आमोणकर विद्यामंदिर है ये मंदिर बहुत हि सुंदर है विशाल है।

और मंदिर कि बहुत उंची सिडीया है पिले और लाल रंग कि फिरोजी रंग का सफेद रंग कि बिल्डिंग जैसा मंदिर बना है पेड भी है।

और बीच मे एक फ्लावर बना हुआ है जिसपे एक आदमी खडा हुआ है मूर्ति --

एक पेड़ है ऊपर बड़ा सा एक फिरोज़ी रंग की बस है सफ़ेद रंग की बस है एक सी गाड़ी भी है।

पेड पौधे है जामुनी कलर का एक पेड है हरे रंग के है लाल रंग के पिले रंग के यहाँ पे फुल है बहुत हि सुंदर।

कुछ घर बने हुए है और यहाँ पे पेड़ है पौधे है पेड़ है उँचे-उँचे हरे-हरे ।

और बिल्डिंग्स हैं बहुत ही अच्छा है किरकेट के लिए बहुत सुंदर सा है।

बहुत अच्छी सुंदर सी जंगल के बीचो बीच एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके आस पास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे है और ये कुछ पिले और सफ़ेद रंग की बिल्डिंग बनी है।

एक काली रंग की स्कूटी है दो आदमी उधर जा रहे है एक आदमी दूसरी साइड जा रहा है तीन बसे खड़ी है तीन से ज्यादा।

ये बहुत हि सुंदर सा दृश्य है जहा पे गौतम बुद्ध कि एक मूर्ती भी है मूर्त बहुत हि उंची है और ये स्ट --

ये बहुत ही अच्छा दृश्य है घूमने के लिए यहाँ पे बहुत ही उचे बड़े दो पेड़ लगे हुए है।

बडे बडे से फुल पौधे लगे हुए है यहाँ पे पेड लगे है खुला आसमान है।

ये कार का शोरूम है यहाँ पे सोफे भी पड़े हुए है जो कार देखने आएंगे वो इन सोफों पे बैठ सकता है बहुत ही बड़ा फोरव्हीलर का शोरूम है कार का शोरूम है यहाँ से कार खरीदि जा सकती है।